और रेड शर्ट पेहरे है वो अंकल तो उनको समान ही निकाल रहे है मछिलयों का --

और यहाँ पर आसमान भी दिखाई दे रहा है और बोहोत सारा --